यह एक बहुत बड़ा जिम दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

ये एक बहोत ही बड़ी बेकरी की दुकान नजर आ रही है और बेकरी की दुकान बहोत ही अच्छी लग रही है यहां पे एक तराजू रखा हुआ है।

एक अमूल नाम से डेयरी नजर आ रही है यहां पे बहुत सारे पार्लर नजर आ रहे है यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए है और ये सारे लोग पार्लर से चीजे ले रहे है यहां का नजारा --

ये एक बहोत बड़ा शोरूम नजर आ रहा है जिसमे बहुत सारी फ्रेमिंग लगी हुई है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं शोरूम में खाने पीने के लिए--

तीन चार औरतों और लड़के बैठे हुए हैं जो नाश्ता कर रहे हैं ये होटल बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पे पंख लगे हुए हैं।

महात्मा गांधी के नाम पे एक शौचालय नजर आ रहा है यहां पर स्नान करके इतनी यहां शौचालय की भी सुविधाएं बाहर एक लगा हुआ है।

हवा महल दिखाई दे रहा है यहां पे बहोत सारी सिधीया बनी हुई है और यहां पे बाहर पेड़ पौधे लगे हैं पीछे मकान बने हुए हैं।

यह एक मछली की दुकान नजर आ रही है जहां पे बहुत सारे लोग मछली बेचने के लिए बैठे हुए हैं और यहां ऊपर--

और यहां पे एक ब एक बाल्टी रखी हुई है यहां एक लंबा सा पाइप ले रखा है यहां फोनपे का बैनर भी लगा रखा है यहां आदमी मछली बेचने के लिए बैठे हुए --

यहां एक बहोत बड़ी अलमारी रखी हुई है और अलमारी बहोत ही बड़ी है जो लकड़ी की बनी हुई है लकड़ी --

ये पेड़ मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहां का नजारा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और यहां पे लोग दूर दूर से आते हैं।

भगवान का मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है जिसमें ओम का भी लिखा हुआ है ये यहां पे पूजा करने आते है।

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है खाटू श्याम जी का जिसमें बाहर पुजारी बैठे हुए हैं और एक मैट बिछा हुआ है।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

एक होटल दिखाई दे रहा है यहां पे बहोत बड़ा होटल दिखाई दे रहा है यहां पे सामने कारे भी बहोत सारी कारे खड़ी हुई है यहां पर बहोत अच्छी लाइट लगी हुई है।

और यहां पे बहुत सारी फ्लाइट भी बनी हुई है यहां पे मेज रखी हुई है बहुत सारे गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे वे रेलवे स्टेशन में रेल का वेट कर रहे--

आ अतिथि गृह जयपुर मे एक अतिथि गृह नज़र आ रहा है यहां पे एक बहोत बड़ा भवन बना हुआ है गेट लगे हुए है।

और यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं जोकि यहां पे पढ़ने आते हैं ये स्कूल बहुत ही अच्छा और यहां का नजारा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।